हॉल नजर आ रहा है. बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसकी सीलिंग दिखाई दे रही है सफेद रंग की फैन दिखाई दे रहा हे काले रंग का लाइट्स लगे हुऐ नजर आ रहे है।

शन नजर आ रहा है जहां पर काफी सारे अलग-अलग मैच में इक्विपमेंट रखे हुए लंबे नजर आ रहे हैं और भी वहां ट्रेड में--

यहां पर एक आ बिल्डिंग का निर्माण कार्य चलते हुए दिख रहा है काफी सारे लेवारो का सो आप काम करते हुये नजर आ रहे वही वहां पर काफी सारे बंबूस रखे हुए दिख रहे हैं और वहां कुछ अ खुदाई की गई है उसकी जो मिट्टी हे भारी है वहत--